और यहाँ का नजारा बहुत बढ़िया नजारा है क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है।

अपने फिटनेस को यहाँ पे निखारने के लिए जोकि ये जिम काफी अच्छी जिम है। लिगों को यहाँ पे काफी अच्छी लगती है जिम एक्सर्साइज़ करने से और ये जिम बोहोत ही बोहोत ही नया-नया मशीन लगाया है जो काफी अच्छा है।

और यहाँ पे डांस कम्पिटिशन भी हो रहा है जो कि बहुत सारे बच्चे यहां पे डांस भी कर रहे है और काफी अच्छी --

यहाँ पे इसलिए इन्होंने इस कार को ले के आया है जो की बहुत ही महेनत करके काम कर रहा है और इस कार को अब भी मरम्मत कर रहे हैं काफी अच्छी तरह से ये इस कार की मरमत्त कर रहे है।

लोगों को बैठने के लिए यहाँ पे चेयर ठो लगा दिया जो की काफी अच्छा चेयर है यहाँ पे गर्मी के दिनों पे पंखे भी चलते हैं जो की लोगों को गर्मी से राहत भी मिलती है।

और दुकानें भी हैं जो की दिखने में काफी अच्छी हैं इस दुकानें में काफी छोटी-छोटी दुकानें हैं।

और कई सारे भगवान की भी मूर्तियाँ हैं जो की बहुत ही काफी अच्छी हैं।

और कम दामों पर मिलते हैं और यहाँ इसमें डिस्काउंट भी मिल जाती हैं जो की काफी अच्छी अच्छी डिस्काउंट हैं।

और यहाँ पे सर्विस भी बोहोत अच्छी सर्विस दी जाती है जो की काफी अच्छी है और यहाँ पर बोहोत सारे कस्टमर आते हैं रेगुलर भी आते हैं।

और इस इस पेट्रोल पम्प का पेट्रोल काफी अच्छी माइलेज देती।

जैसा कि आप देख सकते है वहां एक तालाब है जो कि तालाब के किनारे एक पहाड़ टाइप का बना हुआ है जो कि बहुत सारे उसमें घर है।

और भारी-भारी सामाने हो गई जो कि इस जिम पर उपलध है रनिंग के लिए मशीन भी उपलब्ध है।